यहाँ सैर करते है घूमते है एन्जॉय लेते है और देवी के अम ब भजन करते है यहाँ पर दर्शन करते है।

ये गोदाम है। आटा मील भी है। यहाँ आटा मिलता है। आटा पैकेट में मिलता है। दाले भी मिलती हैं। चावल भी मिलते हैं। यहाँ हर सामान मिलता है यहाँ से। तो लोग यहाँ से ले के जाते हैं।